यहाँ पे गौतम बुद्ध का मूर्ति भी है और इसके आगे --

चार‌ से पांच मंजिले बने हुए और इसके आगे रेलिंग भी लगा हुआ है और ये रेलिंग भी बहुत --